बहुत ही खूबसूरत है टेबल बहुत ही अच्छा है इसके ऊपर खाने की प्लेटें रखी गई है और पीछे एक--

इधर बहुत से कंप्यूटर रखे गए हैं। सर्विस एंड मैनेजर लिखा गया है।

मैं इस पिक्चर में एक रोड देख पा रहा हूं उसके बाहर एक गेट है जो हिमाचल प्रदेश विधान सभा की ओर--

मैं इस इमेज में एक जिम देख सकता हूं जिसमें--

मैं इस इमेज में एक बिहारीये को बहुत सी अलग अलग प्रकार की मछलियाँ बेचते हुए देख सकता हूँ।